पीछे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है मशिने रखी हुई दिखाई दे ये लाल एवम नीली कार्पेट दिखाई दे रही है।

यहाँ एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है एक काला गेट लगा दिखाई दे रहा है और बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

यहा एक हॉल दिखाई दे रहा है इसमे पाइप लगे हुए दिखाई दे रहे पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सारी मूर्तिया बनी हुई दिखाई दे रही है एक नाव दिखाई दे रही है खुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है पड़े दिखाई दे रहा है।